लिबर ऑफिस base पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम libreoffice में simple forms के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम निम्न सीखेंगे
form क्या है
wizard का उपयोग करके form कैसे बनायें
अभी तक लिबर ऑफिस का उपयोग करके हमने database और tables बनाने के बारे में सीखा जहाँ हम data संचित करते हैं
लेकिन database tables के अंदर हम data कैसे enter करें
एक तरीका है कि tables की cells में data सीधे type करें जैसा कि हमने पिछले tutorial में किया
यहाँ जल्दी और साथ ही साथ कम से कम errors के साथ data enter करने के लिए एक अन्य तरीका है
और वह है forms का उपयोग करके forms data एंटर करने और data एडिट करने के लिए अग्रसिरा या यूजर interface है
उदाहरणस्वरूप simple form fields को table में शामिल कर सकता है
चलिए library database के उदाहरण पर विचार करते हैं जिसे हमने पिछले tutorials में बनाया है
अतः simple form fields को books table में शामिल कर सकता है
और अब इस form का उपयोग books table में data enter करने के लिए किया जा सकता है
अब चलिए सीखते हैं कि form कैसे बनायें
पहले libreoffice base program को शुरू करें
यदि base program नहीं खुलता है तो हम नीचे बायीं ओर पर start button पर click करेंगे और फिर all programs पर click करेंगे फिर libreoffice suite पर click करेंगे और फिर libreoffice base पर click करेंगे
अब open an existing database file option पर click करें
recently used drop down box में हमारा library database दिखाई देनी चाहिए
अतः अब इसे चुनें और finish button पर click करें
यदि libreoffice base पहले से ही खुला है
तो हम सबसे ऊपर file menu और फिर open पर क्लिक करके library database file library odb को open कर सकते हैं
वैकल्पिक रूप से file menu मैं recent documents पर click करें और library odb को चुनें
अब हम library database में हैं
left panel पर database सूची में forms icon पर click करें
ध्यान दें कि यहाँ नया form बनाने के दो तरीके हैं डिजाइन व्यू में form बनाना और form बनाने के लिए wizard का उपयोग करना
दूसरे option पर click करें: use wizard to create form
अब हम एक नई window देखते हैं जो कि libreoffice writer window के समान है
और इसमें सबसे ऊपर हम एक popअप window देखते हैं जो हैः form wizard
books table आधारित अपना पहला form बनाने के लिए इस wizard के माध्यम से जाएँ
बायीं ओर 8 steps का ध्यान रखें जिनके माध्यम से हमें कार्य करना होगा
हम step 1 पर हैं जो कि field selection है
और यहाँ दायीं ओर पर tables or queries नामक drop down से tablesbooks चुनें
इसके नीचे बायीं ओर पर हम available fields की एक सूची देखते हैं
दायीं ओर पर हम fields in the form देखते हैं
हमें केवल उन fields का स्थानांतरण करना है जो हमें form पर चाहिए
अभी के लिए double arrow mark symbols वाले button पर click करें
ध्यान दें हमने सारे fields बायें से दायें स्थानांतरित कर दिये हैं
क्योंकि हमने इसके स्वयं के numbers को स्वततैयार करने के लिए bookid field को set कर दिया है हमें form पर इसकी आवश्यकता नहीं है
तो चलिए इस field को वापस बायीं ओर स्थानांतरित करते हैं
दायीं ओर bookid पर click करें और less than symbol button पर click करें
ठीक है अब सबसे नीचे next button पर क्लिक करके अगले step पर जाएँ
step 2 क्योंकि हम simple form बना रहे हैं तो अभी के लिए इस step को छोड़ दें और सीधे next button पर click करें
हम step 5 पर हैंarrange controls
यह भी ध्यान दें कि हम background window में एक orange background में books table देख सकते हैं
arrangement of the main form नामक label के नीचे चार icons पर click करें
जैसे ही हम click कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि labels और टाइटल रचयिता आदि नामक text boxes की व्यवस्था बदल रही है
columnar – labels left नामक पहले क्रम arrangement का उपयोग करें और पहले icon पर click करें
यहाँ labels बायीं ओर और text boxes दायीं ओर हैं एक विशिष्ट paper form की तरह
अब आगे बढ़ने के लिए next button पर click करें
हम set data entry नामक step 6 पर हैं
अभी के लिए हम इस step को छोड़ देगें और अगले step पर जायेंगे
step 7 apply styles
ध्यान दें कि जैसे ही हम list box के प्रत्येक colour को click करते हैं window का background colour बदलता है
इस पर क्लिक करके ice blue को चुनें
अब आखिरी step पर जाते हैं
step 8 अब अपने form को name दें
हम अपने खुद के नाम के चलन का अनुकरण कर सकते हैं
लेकिन अभी के लिए text box में विवरणात्मक name books data entry form लिखें जो कि name of the form label के नीचे है
अब how do we want to proceed after creating the form
पहला work with the form
मतलब हम data entry के लिए form का उपयोग करना शुरू करेंगे
form का डिजाइन बदलने के लिए हम modify the form चुन सकते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे
अभी के लिए हमने कर दिया है तो सबसे नीचे finish button पर click करें
अभी हमने window टाइटल पर books data entry form नामक अपना पहला simple form बना दिया है
ध्यान दें कि text boxes values से भर गये हैं जैसे an autobiography jawaharlal nehru आदि
ये values कहाँ से आयी हैं
हमने इन values को base tutorial के पिछले भाग में सीधे books table में टाइप किया था
अब यह form data entry के लिए उपयोग करने के लिए तैयार है
प्रत्येक value पर जाने के लिए tab कीज पर click करें
ध्यान दें कि form दूसरी book की जानकारी दिखा रहा है और अब टाइटल conquest of self है
हम प्रत्येक book की जानकारी पर भी जा सकते हैं अन्यथा black triangle icon पर क्लिक करके record चुन सकते है जो सबसे नीचे forms navigation toolbar में दांयी ओर संकेत करता है
ध्यान दें कि record number 3 of 5 यहाँ दिखाई देता है
ध्यान दें कि base tool tips प्रदर्शित करता है जब हम अपना cursor इन काले arrow icons पर रखते हैं
first record पहला record previous record पिछला record next record अगला record और last record आखिरी record
हम इनका उपयोग करके रिकार्ड्स में यहाँ वहां जा सकते हैं
अब हम लिबरऑफिस बेस में सिम्पल फॉर्म्स पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखाform क्या है wizard का उपयोग करके form कैसे बनायें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
यह project
इस पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध link पर संपर्क करें